जोकि वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है अर दो एक एक्टिवा ए--

इस पिक्चर में हमें साफ़ दिखाई दे रहा हैं कि दो लेडिज आपस में मिल रहीं हैं गले लग रहीं हैं।

और कई प्रकार के झूले लगे हुए हैं इस पिक्चर के अंदर दो वर्कर --

बुद्ध जो बैठे हुए है बुद्ध जी हमारे उनको--

जोकि रोड जाता हुआ दिखाई दे रहे है आज सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ के पीछे एक टावर खड़ा दिखाई दे रहा है।

फ्रेंड पिक्चर है स्कूल के बाहर कई बच्चे आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

दो तीन डॉक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं और दो नर्स हमें दिखाई दे रही हैं।

जहां पे चर्च के फादर साफ दिखाई दे रहे है ओर इनके अलग बगल भीड़ इकट्ठा हुई है इनसे मिलने के लिए।

आदि फूल हैं और यह ग्राउंड बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके अगल बगल पेड़ लगाए हुए हैं।